यह खाने का चीज है और लग रहा है कचड़ी है और उसमें रस भी है और बहुत सारे फूलगोभी फूल --

और उसने एक बालकनी सा बनाया गया है उधर गेट है और बहुत देखने में --

और इसके अंदर बहुत सारे तार व खजूर-वजुर के पेड़ है और यह व्हाइट कलर से रंगा गया है और बहुत अच्छा --

नीचे भी बिल्डिंग हैउधर-उधर साइड से रोड है इधर हाईवे है मतलब --

यह एक कॉलेज है जहाँ पे छात्र जा रहे है और यह बाउंड्री किया गया है और इसका नाम है जम्नीलाल महाविद्यालय और एक बाहर साइकिल लगा हुआ है ।

यह पीला कलर से रंगा गया है और नीचे बहुत सारा घास हैं और यह --

उसके पीछे पेड़ है पीपल वगेरा का --